हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है उस तस्वीर के अंदर एक बड्डे पार्टी रखी गई है जिसमें --

आप देख सकते हैं बहुत से जेंट्स और लेडीज खड़ी है और इस मंदिर के बाहर --

इतना अच्छा मौसम है देख सकते हैं पास में एक नदी--

एक पेंटिंग दिखाई दे रही है हमें जिसमें दो बच्चे तीन बच्चे--

पीला है आप देख सकते है कितनी अच्छी फिसलपट्टी है और आस पास पौधे लगे हुए है लेडिस खड़ी है बॉयस खड़े है जेंट्स --

इन्हें सम्मानित किया गया है और देख सकते हैं आप उनकी तस्वीर पर माला अर्पण की गई है इन और कुछ लोग अपने --

पेट्रोल कर रहे हैं सामने एक लोरी खड़ी है लोरी में डीजल पेट्रोल डाल रहे हैं देख सकते हैं।

बहुत अच्छा मौसम है यहां पर एक साइड में आड़ू दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक शॉप दिखाई दे रही है इस शॉप पर हर प्रकार का सामान उपलब्ध है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है इस तस्वीर के अंदर हमें --

दो गाड़ी दिखाई दे रही है और ये हमें भवन सा दिखाई दे रहा है इस भवन में अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की वो बाइक खड़ी हुई है।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है और इस तस्वीर के अंदर हमें--

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक तस्वीर है और इस तस्वीर के अंदर हमें --

हेलो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मोर है।

हमें होटल दिखाई दे रहा है और होटल में दो वेटर दिखाई दे रहे हैं जो सम्मान --

समान मिलते हैं यहां पर अलग अलग प्रकार की सूटों की क्वालिटी है सामने पंखा लगा हुआ है और लाइटें दिखाई दे रही है हमें --